यहां पर जिन्होंने किसी ने पिंक किसी ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है। यहाँ पर --

जिसमें कई सारे लोग नजर आ रहे है और बस --

यहाँ एक ओर फूलों की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें ढेर सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। कुछ सफ़ेद कलर के हैं कुछ पिंक कलर के कुछ लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं कुछ हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं।

ढेर सारी विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पर ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ग्रीन कलर के कपडे पहने हुए हैं यहाँ पर सीढियाँ दिखाई दे रहीं हैं। काले कलर से नज़र आ रहीं हैं।

यहाँ एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक पलंग दिखाई दे रही है।

और यहा पर कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और यहा पर कुछ बलून्स दिखाई दे रहे हैं।

में ढ़ेर सारे हरे कलर के अपने अलग-अलग डंडिया दिखाई दे रही है।

यहां हरी हरी घासें दिखाई दे रही है कुछ सूखी घासें भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पीले कलर का पेंट लगा करा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फोर व्हीलर भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर टू व्हीलर भी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है कुछ लाल मिट्टियाँ भी दिखाई दे रही है ।